कुर्सी के ऊपर एक तौलिया लगा हुआ है।

रासन का दुकान है।

दाएं साइड फूल का पेड़ है एक बाएं साइड गुलाब फूल का पेड़ है।

यह एक बेड रूम है जिसमें दो बेड लगी हुई हैं।

बेडशीट रखा हुआ है दो तक चार तकिया है।

पीछे साइड से एक आदमी खड़ा है।

वाइट कलर का खम्बे है। दाई--

यह एक दुकान है जिस में से बहुत सारी राशन की दुकान है।

साइड लेज लिखा हुआ है।

एक दाएं साइड ग्रिल है।

कुर्सी के साइड में येलो कलर का टेबल हैं।

ये पाउडर है चूड़ी है।

यह एक ऑफिस है जिसमें बेंच लगा हुआ है।

जो पाट्टी फंसन का है।

नीचे रेड कलर का मैट बिछा हुआ है।

एक हेलमेट नीचे रखा हुआ है।

जिसमें से अं दो दो बस खड़ी है एक आ स्कूल के आगे पेड़ हैं।

अच्छा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे बांस का खंबा लगाया गया हुआ है।

वहां पर एक आदमी है।

झंडा लगा हुआ है नीचे मंदिर का गेट है।

जो ब्लू और रेड से कलर किया हुआ है।

यह एक सलून है जिसमें ऊपर लिखा है।

जिसका फेस ढका हुआ है।

बहुत बड़ा सा दुकान--

इसके ऊपर से एक बोर्ड लगा हुआ है स्टेशन के नीचे बहुत सारे आदमी हैं।

एक आगे साइड टेबल है।

अ एक रेड लाइन लगा हुआ है।

गेट दरवाजा है। एक नीचे कुछ रखा हुआ है।

इसका दायां साइड ए_सी लगा हुआ है ऊ--

ग्रीन कलर का बोर्ड है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। दाएं साइड पेड़ है।

आगे बीच में एक खंभा खड़ा है।

यहां बहुत सारे आदमी भी है।

और दाया स अम्म बाया साइड में एक आदमी बैठा हुआ है।